और एक व्यक्ति का लोगो बना हुआ है एक साइकिल है।

तार भी लगा हुआ है और पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पर हमें दिख रहा एक हाथी है और हाथी के सूंड पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

और घास पोस भी लगे हुए हैं पत्थर भी हैं।

और घास भी लगे हैं नीचे और पेंड़ भी लगे हुए हैं बड़े-बड़े से।